इस दृश्य में एक बिल्डिंग है जिसका लाल रंग है इस बिल्डिंग के ऊपर राकेश ट्रेडिंग --

इस दृश्य में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर कुछ बैनर है बैनर पे रॉयल्स ऑटोमोटिव लिखा गया है।

यह एक जिम का दृश्य है एक बॉडी-बिल्डर अपने कैमरे से --

इसमें एक ए.सी. दिख रहा है एक पंखा दिख रहा है।

यह एक सब्जी मार्केट का दृश्य है इस सब्जी मार्केट में बहुत सारे सब्जी बिक रहे हैं एक व्यक --